चोघट बना रहा है बगल से सीडी बनाई गई है एक बड़ी सी बिल्डिंग हैजो कथे रंग की और सफेद रंग की है सफेद और नीले रंग का सामान है।

बल्ब रखा हुआ है बगल मै बिस्किट नमकीन रखे गए है साइड मै निर्वे के पैकेट रखे है जो सफेद रंग की है अलमारी है जो भूरे रंग की है।

भूरे रंग की मिट्टी है और खिड़की बनाई गयी है लिफ्ट के लिए दरवाजे बने हुए है।

जो की बेट पकड़े क्रिकेट खेल रही है स्टंप हरे रंग की है एक लड़का जो अंपायर है।

प्लेन है सफेद रंग की जो काफ़ी तेज से चल रहा है और टायर लगी हुई पे हरे रंग की घास है।

फूले रखी गयी है पिले रंग की बहुत सारे फूले रखे गए है और एक छोटा सा लाल रंग के फूल है और फूल की डाली हरे रंग की है फूल कुछ बिखरे हुए है कुछ काले रंग के फूल है कुछ सूखे हुए फूल पड़ी हुई है।

यहा पर चारो तरफ पेड़ पौधे लगाय गय है नारियल के पेड़ भी है जो हरे रंग की पत्ती है उनकी।

और पहाड़ है जो हरे रंग की पत्ती है सफेद रंग का आसमान है पहाड़ पे बहुत सारे पड़े लगे हुए है और ना -- नदी काफ़ी तेजी से बह रही है और बहुत सारे पथर है।